सबसे पहले वाले पलंग पर दो तकिए रखे हुए है और सामने एक लाइट जल रही हैं और दोनों तरफ पलंग रखे हुए है।

दुकान के आगे दो फोटो लगे हुए हैं साइड में एक मीटर लगा है और दुकान के आगे से एक केबल जा रही है।